यहाँ पे हमे दिखाई दे रहे है की एक जो है खेत है जहाँ पूरा फसल लगा हुआ है यहाँ पे एक पेड़ जो है लगा हुआ है।

साथ ही इसके आस-पास जो है बोहत घने जो है हमे पेड़ दिखाई दे रहे है साथ ही यहां पे कुछ --

ये पेड़ जो है नीचे से काफी पतले है ऊपर जाके जो है इनका झाड़ है साथ ही यहाँ पे --

एक बहुत बड़ा-सा हमे पेड़ दिखाई दे रहा है साथ ही सामने जो है --

या तो इसमें गेहूँ या इसमें जो है धान लगा हुआ है पीछे तो हमलोग हमे यहाँ पे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और साथ ही यहाँ पे कुछ पर्दा-फ़र्दा डला हुआ है जिसपे एक केक रखा हुआ है उसके पीछे एक लेडीज खड़ी हुई एक छोटी सी बच्ची को लिए हुए है।